और यहां पे ये घर दिखाई दे रहा है। यहां बाहर पार्किंग की जगह भी है। यहां पे कार स्कूटर बाइक ये सभी कुछ पार्क --

के यहाँ पे बाहर स्कूटर कार वगैरा ये सब कुछ खड़ीं है। ये पान की गुमटी भी है यहाँ पे।

ऊपर ये आसमान बहोत प्यारा दिखाई दे रहा है। नदियों में लहरे बन रही हैं।

कार वगैरह स्कूटी है। ये सब यहाँ पे डेयरी से मिठाइयां वगैरह ये सारी चीजें लेकर जाते हैं क्योंकि इनकी प्योरिटी और क्वालिटी के साथ-साथ ये लोग --

ये पंजाब नेशनल बैंक है यह पर ये ईदगाह ईता ब्रांच में एच.डी.एफ.सी. बैंक है|

ये इसमें लिखा हुआ है इसका पीरियड जो है नौ नवी से दसवीं शताब्दी तक है।

ये बोहोत ही और सब्जी का दृश्य है।

सब इतनी प्यारी सी मतलब ऐसा-ऐसा थार टाइप में दिख रही है। ये कार है।

लेने आते हैं और गाड़ी वगैरह भी लगे हुए हैं और कुछ लोग कम से आए हैं घर-घर भी बने हैं आस पास में ट्रैक्टर जैसे कुछ लग भी रहा है।